परकार के बोटे लगाए गए हैं।

सामने अलग अलग केबिन में--

इसकी वॉल पर क्लॉक भी--

ये ओफ्टल मेटल का शो रूम है।

सेम कलर की लाइट्स भी लगी हुईं हैं।

सत्संग ब्यास जलालाबाद वन डेरे की--

इसके बाहर काफ़ी हरे भरे वृक्ष लगे हुए है।

पैलेस में काफी बड़े बड़े सोफे लगे हुए हैं।

ट्रक एंड कई गाड़ियां आ रही है।

दूसरे आदमी को पकड़ा हुआ है।

सैलून में बैठे अपना हेयर स्टाइल बनवा रही है।

इसमें एक ब्लैक कलर की गोट भी--